पानी बहुत ही ज्यादा हैं और नाव भी चल रही हैं बाहर एक तरफ पेड पौधे भी नजर आ रहे हैं ।

कुछ बच्चियां हाथ धो रहीं हैं कुछ बच्चियां हंस रही है कुछ बच्चियां अपने अपने काम में बोहोत ही ज्यादा व्यस्त नजर आ रहीं है।

इस विडियो में हम देख सकते है कि यह एक झरने की तस्वीर है झरना बोहोत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और सुहाना लग रहा है इसमें दो व्यक्ति स्नान कर रहें हैं जो काफी खुश नजर आ रहे हैं।

इसमें चेयर रखे हुए है चेयर दो रंग के है एक लाल रंग के है और दूसरा सफ़ेद रंग का है जो काफी सुंदर है।

क्योंकी धुप ऊगा हुआ है बहोत सुंदर नजारा लग रहा है।

पानी भरे होने के कारण पूरा हरियाली छाया गया है जोकी काफी सुंदर है ।